और ये कम्पनी से निकाल के लाया गया मतलब एक एजेंसी से और जोकि बैट्री से चलता है ये ये इलेक्ट्रिकल ऑटो बोला जाता --

से माँ का होटल है। जो की बहोत बढियां होटल है। एक मज़ार है ये काफी बड़ा मज़ार या मदरसा हो ये वो है। सफ़ेद कलर हो रहा इसपे लाइट भी बहुत बढ़िया लग रही है और इसमें अभी काम भी चल रहा है जिसमे के बांस बल्ले बल्लियाँ पखड़े बन रहे हैं यहाँ पर एक साइकिल भी खड़ी है बाहर एक बढिया सी --

बड़े से टेबल हैं दो तीन जो कि यहाँ पर चार चार पांच पांच चेयर हैं इस टेबल पर एक उस पर और यह बहुत बड़ा टेबल है शादी घर है एक।

बुजुर्ग बैठे हैं और एक लेडीज डॉक्टर है इनकी रिपोर्टें देखकर ये इन्ह बता रही है कि इनमें क्या प्रॉब्लम है क्या बीमारी है और जिसमें कि --

देख रहे हैं इस तस्वीर में हम देख रहे हैं मतलब एक बड़ी बढ़िया तस्वीर लग रही है ये इसमें काफी ज्यादा मतलब ये वो है।

चरकी होती है मुर्गा छाप वाली यहाँ पर आतिशभाजी के पटाखे हैं बहुत ज्यादा जिसमें कि हम देख रहे हैं कि एक हम देख पा रहे हैं।

एक उस तरह से काम चल रहा है जिसमें कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा लेडीज है यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है पूजा चल रही है या फिर कोई बड़ा वो चल रहा है।

ये एक किला है जो कि यहाँ पर इसमें के नकली नकली हाथी भी है।

जो के बोहोत बड़ा कॉलेज है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि यहां पर एक बड़ा-सा स्टोर है मतलब एक गेट है जिसमें के यहाँ पर स्कूल के टूर भी जा सकते हैं।